ये एक पार्क है यहां पे बहुत ही अच्छी--

सामने कुछ टेंट भी छोटे छोटे लगे हुए हैं।

सामान है जो सेल के लिए रखा गया है शायद ये कुछ--

दुकान की तरह दिखाई दे रहा है।

ये बहोत ही सुंदर पर्दे हैं जोकि एक लाइन में लगे हुए हैं।

हेलो गाइस ये जगह पर बहोत ही खुली और मैदान सी जगह लग रही है यहां कुछ ही घर दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बहोत सुंदर इमारत है।

जिनमें अलग अलग कैंटगरी की गाड़ियां है।

जिम के जिम में आते है।

और लाईटिंग बहोत अच्छी आ रही है इसकी--

जिससे सोनी के सोनी अक्षर दिखाई दे रहा है।

यहां एक मेला लगा हुआ हैं।

और एक टेबल है और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है ये ऐसा लगता है जैसे एक ऑफिस हो।

इसमें एक पिक्चर भी लगी हुई है जो की सीनरी है।

ये टायर बहोत बड़ी गाड़ियों के हैं जैसे कि बस ट्रक ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के हैं।